टैग भी लगा हुआ है हर एक बॉक्सएक्स में पीछे की तरफ बहुत बड़े बड़े बास्केट हैं उस बास्केट में भी बहुत सारे सामान रखे गए हैं जैसे कि --

समान जाता है वो नजर आ रहा है दीवार में वहां लिखा हुआ है चश्मे वाले हीरा भाई चश्मे वाले लिखा हुआ है उसे दीवाड़ में --

जैसे कि मैं देख रही हूं यह एक एच_डीए_फ_सी बैंक है और इस बैंक के बाहर मुझे दो व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं --

मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत रकम की चिप्स रखी हुई है जैसे चैटो और अन्य प्रकार के चिप्स है।

यहाँ का पता लिखा हुआ है कटिहार ज्वेलरी शॉप के बाहर में फूल से डिजाइन की गई है बहड़ में --

जैसा कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है और यहां पर एक मुझे बैंक नजर आ रहा है बंधन बैंक और उसके पास में ही बंधन बैंक की एटीएम है --

जैसा कि मैं देख रही हूँ यह एक कैफै है और इस कैफै में बहुत सुंदर सा लाइटिंग्स की गई है डेकरैशन की गई है यह कैफै बहुत खूबसूरत लग --

जैसा की मैं देख रही हूँ ये एक दुकान है ये एक प्लाई बोर्ड का दुकान है और ये प्लाई बोर्ड के दुकान में --

बड़े बड़े व्हाइट कलर में सारे ए_सी रखे गए हैं रिसेप्शन का डेस्क भी दिखाई दे रहा है यहां पर नीचे में जो टाइल्स लगी हुई है वह भी वाइट है सीलिंग में लाइट्स लगे --

अंदर की तरफ जो रेस्टोरेंट है वहां कुछ चेयर्स दिख रहे हैं और रिसेप्शन डेस्क में व्यक्ति खड़ा है यहां पर ग्रीन --

फूल मिलती है ये फूल बाजार है यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ यहां पर लोटस रखा हुए हैं बड़े बड़े माले बने हुए हैं उस माले में --

फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं वो इनकॉम्पलेटेड हैं वो अन्डर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है --

उस शर्ट को वो आयरन करते हुए नजर आ रहा है वो आयरन की वायर बहुत मोटी नजर आ रही है कुछ --

और यहाँ पर बलून्स लगाए गए हैं गोल्डन एंड ब्लैक बलून्स लगाए गए हैं डेकरैशन के लिए --

यह गार्डन में एक तिरंगे का पिलर्स बना है और स्कूल के छत के ऊपर भी मुझे तीन चार अलग ढंग के फ्लैगस --

जैसे कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है पीछे की तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं पहाड़ में बहुत सारे पेड़ घास जंगल नजर आ रहे हैं पेड़ के सामने --

बाहरी तरफ है इस कप मैं देख पा रही हूँ ये कप कॉफी का है नेसके कॉफी का कप कोई व्यक्ति पकड़ के है इस कप को --

पासी में कुछ जंगल नजर आ रहे हैं घास है बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं बड़े बड़े पेड़ हैं --

ये मंदिर में सिर्फ ऑरेंज कलर के और येलो कलर के फ्लावर से डेकोरेटेड किया गया है मूर्ति पूरा फूल से ढकी हुई है।

सलून का नाम हैं बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलों केची की एक फोटो बनी हुई है वहाँ पर --

जैसे कि मैं देख रही हूं ये एक कपड़ा का शोरूम है यहां सारे के सारे लेडिस वेयर कपड़े मिल रहे हैं जैसे कि सूट सलवार कमीज साड़ी लहंगा --

एक व्यक्ति जो पुरुष है वह भी सामान बेच रहा है यहां बहुत सारे अन्य प्रकार के रंग में --

जैसा कि मैं देख रही हूं यहां एक व्यक्ति खड़ा है पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है तीन चेयर लगे हुए हैं लोहे के।

एक टेबल लगा हुआ है उस टेबल के ऊपर वो कुछ काम कर रहा है पीछे की तरफ बैनर्स लगे हैं पोस्टर्स लगे हैं बहुत सारे --

जैसा की मैं देख रही हूं सुबेह का वक्त है मुझे यहां पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है ये एक ब्रिज है जहां--

लोहे का लंबे लंबे रोड्स रखे हुए हैं बहुत छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं सिर्फ रेल गाड़ी चल रही है पटरी के ऊपर --

जैसा की मैं देख रही हूँ यह एक मंदिर है हिन्दू लोग का मंदिर है यहां पर हिन्दू लोग सब जाते हैं पूजा करने के लिए यहाँ पर बाहर के --

बाहर की तरफ मूर्ति रखी हुई है हनुमान जी की मूर्ति है इस शोकेस के अंदर जैसे कि कांच के डिब्बे में अंदर --

जैसा कि मैं देख रही हूं शाम की वक्त है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है आसमान नीला है।

और यहाँ पे एक राइड है झूले है यहाँ पर स्लाइडिंग वाले झूले हैं यहाँ पर चार जगह के --

और यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छी लग रही है पीछे की तरफ बड़े-बड़े नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं बहुत सारी टॉवर दिखाई दे रहे है पीछे की तरफ।

जैसे कि मैं देख रही हु मुझे ये एक बहोत बड़ा नदी या एक तालाब नजर आ रहा है।

लेकिन ज्यादातर लंबे लंबे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है पूरा एक पेड़ की तरह दिख रहा है मुझे एक कंचन पानी दिखाई दे रही है इसलिए --

लगा हुआ हैं ऊपर की तरफ ए_सी के नीचे जो ब्लैकबोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है अपरीलिया और उसके नीचे में दो ब्लैक टीशर्ट हैंगर में लगे हुए है तीन चार हैलमेट --

जैसा की मैं देख रही हूँ दोपहर का वक़्त है यहाँ मुझे एक सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है इस बिल्डिंग के ऊपर एक छत है जो --

घना सा बड़ा सा जंगल है बड़े बड़े पेड़ है। दो चार पेड़ मुझे देख रहे हैं उसमें झाड़ी--